साइकिल पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है एक लोहे का खंभा गड़ा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे हरे-भरे पेड़-पौधे --

भुसड़ भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। निचे सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर ऑटो रिक्सा लोडिंग गाड़ी और साइकिल रिक्सा चलते हुए --

बुक दुकान लगी हुई दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी पुस्तक ल रखी हुई दिखाई दे रही है। कॉपियाँ रखी दिखाई दे रही है कार्टून रखे हुए दिखाई दे रहें हैं। पानी की छोटी सी टंकी रखी दिखाई दे रही है। एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ऊपर अभिनव पुस्तक सदन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ग्राउंड में बहुत सारे साइकिल रिक्शे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। गेर ग्राउंड की मिट्टी लाल दिखाई दे रही है और एक पास में सड़क दिखाई दे रही है। सड़क के पास बहुत बड़ी एक इमारत बनी हुई दिखाई दे रही है।

दे रहा है। कुछ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही है। लोग इधर-उधर चलते हुए दिखाई दे रहें हैं और --

कुछ बड़ी-बड़ी सी बिल्डिंगें दिखाई दे रहीं हैं। निचे से एक के सड़क दिखाई दे रही है। सड़क --

डांस करते हुए दिखाई दे रहा है खिड़कियाँ दिखाई दे रही है ए.सी. लगे हुए दिखाई दे रहे है लाइट लगी हुई दिखाई दे रहे है दरवाजा दिखाई दे रहा है दरवाजे में एक पर्दा --